उन दुकानों में सफेद कलर की फूलों की माला दिखाई दे रही है।

उन ईंटों के पास में कुछ आदमी दिखाई दे रहे--

उन द्राज के ऊपर समान दिखाई दे रहा है।

लाल कलर के ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं।

छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है।

शादी का रिसेप्शन दिखाई दे रहा है।

उस रिसेप्शन में बलून दिखाई--

इस फोटो में एक डांस का स्टेज दिखाई दे रहा है।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

झरने का पानी नदी में गिर रहा हैं।

उस मेडिकल में बहुत सारी दवाईयां दिखाई दे रही है।

वह मजदूर गीट्टी की तगारी उठा रहे हैं।

उन मजदूर के पास में बहुत सारी ईटे पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

उस ए_टी_एम के बाहर गाड़ियां दिखाई दे रही है।

बहुत सारी गाड़िया दिखाई दे रही हैं।

वहां पर बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

कोचिंग क्लास दिखाई दे रही है।

उस चर्च में बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है।

उस इस्कूल के आस पास खेत दिखाई दे रहे हैं।

झरने के पास एक नदी दिखाई दे रही है।